बोहोत अच्छे मिस्त्री काम रहे हैं। इतने अच्छे वहाँ काम रहे हैं। सिमेन्ट विमेन्ट ला रहे हैं। एरिया में मतलब एक मजदूर लगा हुआ है जो सब कुछ है।

जगहे में बनी हुई है। ये पुलिस की चौकी का नाम है कवाल। थाना जनपद है। बहोत बढ़िया लग रहा है ये अच्छा लग रहा है।

यहां पे एक स्टेट बैंक है। डेरी है। आदमी है। एक ऑटो खड़ा है।

सब कुछ मिलते हैं। दूध प्रोटीन सब कुछ मिलता है। इसमें डेरीमिल्क की चॉकलेटे मिलती हैं। बोहोत अच्छी लगती--

की मशीन है। इसमें कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। अच्छा लग रहा है काफी। बहोत तगड़ा लग रहा है ये।

देखो ये दरी बुनने ये लोग इतनी मेहनत कर रहे है ये दरी फिर बिस्तर बना रहे है ये ताकि ठंड ना ल --

ये मस्जिद है। इसमें मुसलमान लोग नमाज़ पढ़ने जाते है। अजान होती है। जब अजान होती है जब ये मुसलमान लोग --

अब बाइक वैगेरा जाती है ट्रक पिरक जाती है। काफी बढ़ा वाहन जाता है रोडो पर।

देखो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कोई चित्र बनाया कोई लिखाई कर रहे है। देखो बोहोत पढ़ रहें हैं।

ये यात्रा का है। यात्रा करते हैं कुछ लोग गरीब लोग मुसलमान लोग हिन्दू लोग --

घर कफी अच्छा बन रहा है। पिलर वीलर खड़े हो गए दिखे हैं। बहोत बढ़ियाँ लग रहा है। बहोत तगड़ा रहा है ये ।